आपको लाइट नजर आ रही है यहाँ पर लड़की की डिज़ाइन में सोफा बनी हुई --

भी लगी हुई हैं एक-दो मंजिल घर दिखाई दे रहा है जिसके नीचे सटरे हैं।

एक पेटी रखी हुई है। एक गद्दा बिछा हुआ है। जिसपर ये समान रखे हुए है। एक खिड़की दिखाई दे रहे है। एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बैट दिखाई दे रहे है। बॉल रखे हुई है। बड़े-बड़े कप ट्रॉफी रखी हुई है और --

लाइटें लगी हुई हैं और नीचे कार्पेटे बिछी हुई हैं।

दो बसे खड़ी दिखाई दे रही हैं साइड में और बसे खड़ी हुईं हैं यहां --

कपड़ो से भरी हुई है एक आदमी दिखाई दे रहा है कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसने टोपी लगाई हुआ है।

चल रहा है ये सेल लगी हुई है यहाँ पर आपको --